हलकी सी दोनों किनारी के ऊपर एक बाउंड्री जैसे की गई है ईंटों से ही और बीच में एक खम्भा खड़ा दिखाई दे रहा है जो की लाइट का खम्भा है और बहुत ही सुन्दर पेड़ हरे-भरे दिख रहे हैं।

यहाँ पर सोफ़ा की कुर्सी और थ्री सीटर वाली सीट भी राखी दिखाई दे रही है निचे जमीन पे व्हाइट कलर की टाइल्स दिख रही है।

पीछे की साइड कुछ और भी छीजे राखी दिख रही है पिंक कलर की दीवार दिख रही है और जो सोफ़े की गद्दी पर नीले कलर की गद्दी है।

उपर उड़ती हुई कुछ दिल की आकार की रेड कलर की डंडियों मे डिज़ाइन बनाई गई है बहुत ही सुंदर लग रहा है पीछे की साइड़ --

यहाँ पर हम एक सोफ़ा की सी कुर्सी या बेड रखा हुवा दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का है बहुत सुंदर डिजाइन है इसमे।

एक रास्ते पर एक क व्यक्ति चल के जा रहा है जो नील कलर की शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए है और एक रास्ते है के दोनों रास्तों के किनारों पर हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक दो व्यक्ति चलते दिख रहे है हाथ में डंडा लिए हुवे ब्लैक पैंट सफेद शर्ट पहने पेड़ है बहुत--

और साइड मे कुछ चेयर रखी हुई है जिसमे एक व्यक्ति का पैर दिखाई दे रहा है और एक स्टूल दिख रहा है।

यहाँ पर हम एक टेबल पर एक आइसक्रीम रखी देख रहे है प्लेट मे जोकी कलर मे है काफी सुंदर रहे है पिक यल्लो व्हाइट कलर मे।